कपड़े का प्रोडक्ट या फिर किसी सर्फ शैंपू का प्रोडक्ट बनता है और ये एक बोहोत बड़ी कंपनी है जिस पर तीन सौ पचपन तीन सौ पिचहत्तर तीन सौ तीन सौ निन्यानवे का एक टैग लगा --

एक एसीसी सीमेंट का एक बड़ा सा टैग लगा है और जिसमें कि यहां पर बहुत सारे व्यक्ति जाके काम कर रहे हैं।

जोकि अभी भरा नहीं है और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे के यहाँ पर --